यहां बहुत सारे मजदूर और मिस्त्री है।

है है बहोत सुंदर पारक दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत बड़ा खाली खेत पड़ा हुआ है।

शिखर ऑर्गेनिक शैंपू सर सारा सामान यहां मिलता है।

बहुत सुंदर टमाटर दिखाई दे रहे हैं।

राजमा मैदा बेसन--

यहां बहुत बड़ा खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और दो तीन कुर्सी भी बिछी हुई है बहुत सुंदर दुकान सी नजर--

यह मिट्टी को खोद खोद के डालती है।

गुलाबी सा भी दूल्हा दिखाई--